तस्वीर है तस्वीर एक बहोत बड़ा इमारत का तस्वीर दिया गया है यहां पे जो है लोहे का अह लोहे का जो है।

अ स जो टोपी के जो आगे वाला हिस्सा उसे उसका अपना मुंह ढाक रखा है जो नजर नहीं आ रहा ये लग रहा है कोई--

ये जो तस्बीर है तस्बीर यहाँ पे जो लग रहा है एक मुर्गी फार्म का तस्बीर लग रहा है ।

बहत सारे मुर्गिया ये मुर्गी जो है यहाँ पे है लेकिन तार जो है बॉउंड्री दिआ गया है बहार में --

ये जो तस्वीर है ये तस्वीर कोई अ --

अह स्टेट बैंक ए_टी_एम का तस्वीर है जहां पे बहुत लंबा सा लाइन लगा हुआ है कम से कम--

और यहाँ पे जो है बिल्डिंग जो है बहत थोड़ा गन्दा सा नजर आ रहा है ऊपर में जो है टीना भी नजर आ रहे है सटर भी नजर आ रहे है यहाँ पे --

ठंड का समय का तस्वीर लग रहा है कुछ धुंधला सा लग रहे हो दूर दूर मे तो इसलिए लग रहा है लग रहा है दिन का--

और ग्लास भी दिख रहा है जो बिल्डिंग की ऊपर से बहार का नजारा बहत सूरत बहत खूबसूरत दर्शाती हुई।

कमरा जो बहुत ही सुंदर नीट अँड क्लीन है सफेद रंग का कमरा है।

हँडल बांध के रखा हुआ है एक के ऊपर एक रखा हुआ लग रहा है ये लग रहा है कुछ रिंग के सीलिंग के शेल्फ मे रखा हुआ है।

अ तार जाते हुए नजर आ रहे है घर मे एक बड़ा सा--

लोहे की बाउंड्री के अ लोहे के तार के बाउंड्री के अन्दर बना हुआ है दूर में बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है दिन का समय है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में लड़का सेल्फी हुए और और बहोत सारे लोगो के साथ लग रहा है यहा पे जो है बहोत सारे लोग है जो पिकनिक पे गये है।

सर पर टोपी लगा क फ्रिज भी नजर आ रहे हैं दो फ्रिज के ऊपर जग भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं।

प्लास्टिक का चेयर है टी_वी का स्क्रीन भी लगा हुआ है छोटा सा फेन भी है एसा लग रहा है एक छोटे से कैंटीन या होटल झा लोग हररोज खाना खाया--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो है बहोत सारा किताब रखा हुआ नजर आ रहा है टेबल के ऊपर--

यह अपर स्टोर रूम का तस्वीर लग रहा है लाइट भी जला हुआ है और किताब रखने का जो है टेबल जो है बहोत ही भड़िया डिजाईन किया गया है बहोत की सुंदर लग रहा है।

ये जो तस्वीर है ये तस्वीर में जो है ये एक कपड़े का दुकान का तस्वीर लग रहा बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं रंग बिरंगी कपड़े रखे हुए हैं।

जो अ यहाँ पे स्टैंड पे जो कपड़े ला के भी रखे हैं और शेल्फ में जो है हरा भरा जो हैं कपड़े रखा हुआ है।

लाइटिंग भी है बहोत कुछ बढ़िया लग रहा है बहोत ही सु ब बहोत सुंदर लग रहा है ये तस्वीर जो है।

यहाँ पे जो तस्वीर है ये तस्वीर क बड़ा सा ऑफिस का तस्वीर दिखाया गया है लग रहा है ये जो यहाँ पे जो है अ--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक एम्बेसडर कार भी नजर आ रहा है और दो-तीन कार गाड़ी नजर आ रहा है।

सामान बाहर में रखे हुए हैं अंदर में जो सुपरमार्केट का अंदर का जो लाइट है इतना उजाला नहीं है इसीलिए ज्यादातर नजर नहीं आ रहा है।

अ मिट्टी है और फूलों के पौधे भी नजर आ रहे हैं बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं।

यहा पे जो तस्वीर है तस्वीर में एक ए_सि का जो है फेन का तस्वीर दिया दिखाया जा रहा है जहा एक छत रखा हुआ है।

ये जो तस्वीर है बहोत बड़ा सा गोल्फ का ग्राउंड लग रहा है और यहां पे दूदू में बड़ा बड़ा इमारत--

बड़ा इमारत नजर आ रहा है बहोत सारी गाड़ियां पार्क किया हुआ है गोल्फ के जो होल के जो फ्लैग ग है गड़ा हुआ है--

और ये जो हरा भरा है बहुत ही स बहुत ही अ सुन्दर दृश्य है ये ग ग गोल्फ का जो है बहुत ही मज़ा आ रहा है।

यह सब नजर आ रहा है रखा हुआ नजर आ रहा है यहां पर जो है सेल्फ है यह ग्रोसरी दुकान का लग रहा है।